इस इमेज में सामने यहां पर एक बैंक दिखाई दे रहा है बाहर यहां पर कुछ लोग नज़र आ रहे हैं।

जहां पर पौधे लगे नजर आ रहे हैं और यहां आसमान में बादल भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें कुछ लोग नहाते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर गेट और खिड़की भी दिखाई दे रहे हैं।